कैसे करके रखिए और सब लोग इस कर्यक्रम के लिए आ इकट्ठे हुए है।

एक समुद्र है और इसमें एक जहाज दिख रहा है और वो द रस्सी से जहाज को--

ए एच डी एफ सी बैंक आ है और बैंक के बाहर चार आ पुरुष खड़े हुए--